यह एक रिवर है जिसके किराने पर एक बोट खड़ी हुई सब बोट को--

किनारे पर एक रस्सी की सहायता से बाँधा गया है तथा आस पास बहुत सारी दीवारों पर पत्थर जामाये--